साथ ही साथ यहां पर बहुत सारी नौकायें हैंजिसके अ अंदर बहुत सारे यात्री भी बैठे हुए हैं।

यह विद्यार्थी पन्द्रह अगस्त के दिवस पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए यह दिखा रहे हैं।

यह एक बहोत ही सुंदर सा दृश्य है। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि कितने बड़े और बढ़िया से बादल है। उनके नीचे बहोत ही हरे-हरे पेड़ और पौधे है।